उसमें जो है दो ठो टेबल दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर और ब्लैक कलर करके मिक्स करके दिखाई दे रहा है।

ये जो है शायद हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का अंदर में जो है बहुत सारे नर्स और डॉक्टर लोग दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में जो है अ लाइट बल्ब्स जलते हुए दिखाई दे रहा है।

ये जो है घर दिखाई दे रहा है इसमें। घर का बाहर दिखाई दे रहा है।

और यह ऑफिस को जो है आ व्हाइट कलर से पेंटिंग करके दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है बहुत सारी पिलर्स दिखाई दे रहा है बाहर में।

उसमें जो है रस्सी भी दिखाई दे रहा है नाव को बांध के।

जो है रास्ता है और रास्ता में जो बहुत सारे आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

और उसमें जो है रोड जो है ग्रे कलर करके दिखाई दे रहा है।

ये जो है बाजार हैं बाजार में बहुत सारी गाड़ी और स्कूटी वगैरा दिखाई दे रहा है।

एक तो बड़ा करके एम बाजार करके लिखकर भी दिखाइए दे रहा है।

उसमें जो है एक ठो आईडीबीआई बैंक भी दिखाई दे रहा है।

उसमें में जो है एक ठो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें टूडेज स्पेशल लिख के दिखाई दे रहा है।

जो वेल्स लिखके भी दिखाई दे रहा है सामने में सीढ़ी स्टेप भी दिखाई दे रहा है।

सामने पत्थर भी दिखाई दे रहा है ग्रे कलर मे।

और इसमें जो है त्रिरपाल भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में।

एक ठो बड़ा वाला ब्लू कलर वाला बल्टिन भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है साथ में दो ठो आदमी दिखाई दे रहा है और दोनों का फेस जो है ब्लर करके दिखाई दे रहा है।

ये जो है कुछ घर का अंदर जैसा दिखाई दे रहा है।

और बैंचा भी दिखाई दे रहा है और कुर भी दिखाई दे रहा है।